सडक पर आस पास छोटे छोटे गमले रखे हुए है गमलो में पेड़ लगे हुए है पेड़ पोधो के रंग --

यहाँ एक सिविल इंजीनियरिंग क्लास अकॅडमी है जिसकी दीवार का रंग पीला नजर आ रहा है यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग पीला --

दिखाई दे रहा है उपर आसमान नजर आ रहा है आसमान का रंग सफ़ेद है नीचे घास का रंग हरा नजर आ रहा है।

नजर आ रहा है और नीले दरवाजे नजर आ रहे है इनमे सभी दरवाजो पर एक एक लोग खड़े हुए है दो पुलिस वाले खड़े हुए है।